कुछ व्हाइट कलर का रखा हुआ --

यह देखिए यह टिये शीशे की टेबल है और देखिए इसके नीचे --

यह देखिए सिटी सेंटर सैलून है गोपालगंज का और देखिए ए.सी. सैलून भी है और देखिए बाहर --

प्रदर्शन कर रही है और सामने देखिये फील्ड है जो हरी - हरी घास हे ।